इसका ऊपर में स्लाइड करना भी दिखाई दे रहा है।

बैंच का ऊपर में बैग रके है।

यह कमरा के अंदर में एक सीसा का टेबल रखा हुआ है।

यहाँ में बहोत सुंदर स्टेज बना के है।

सोफा के ऊपर में कलरफुल कोसेन रखे हुए है।

फ्लोर को टाइल्स से फिक्स करके है।

घेरा भी लकड़ी से बनाकर है।

कागज में एक लड़का का फोटो दिखाई दे रहा है।

ये रूम को पूरा सफेद कलर से पेंट किया है।